यहाँ पर एक शॉप है जिसके ऊपर व्हाइट और ब्लैक कलर का एक बोर्ड लगा है नीचे दुकान है दुकान में --

भी बुक्स को सेट करके रखा गया है। सामने की तरफ एक व्यक्ति खड़े है।

क्योंकि वहां पर घना कोहरा छाया हुआ है और ऊपर आसमान में सफेद और नीले बादल हो रहे--

यहां पर एक मशीन चल रही है और जो जे_सी_बी मशीन है इसको एक खदान के पास--

लोहे के सरिया आस-पास लगाए गए है। साइड में एक ब्लू कलर की मशीन भी--

वाइट कलर का इसमें अलग-अलग स्टैंड है और आइसक्रीम रखी हुई। इसमें अलग-अलग फ्लेवर और सिस्टम की--

यहां पर भगवान की एक फोटो लगी है जिस पर माला चढ़ी हुई है और आस पास और भी पूजा का सामान रखा है सामने ही--

यहां पर पहाड़े पहाड़ों के आस पास बहोत से पेड़ लगे हुए हैं और ऊंचाई से नीचे की तरफ पानी--

आसपास यहां पर कुछ पौधे लगे हैं बड़े पेड़ भी लगे हैं।

बहोत सामान अंदर दुकान में रखा हुआ है और सामने एक टेबल है जिसपे बहोत सी बुक्स --

आसपास यहां चारों तरफ बहुत से गमले रखे हैं जिसमें पौधे लगाए गए हैं।

यहां पर एक मंदिर है जिसमें भगवान का शिवलिंग है और इस पर बहोत ही अच्छे से फूलों से--

यहां पर एक लाइट येलो कलर का क्लाश रूम है।

यहां पर एक पेट्रोल पंप पर जो वाइट और ऑरेंज कलर का है यहां पे बिल्कुल खाली है कोई भी नहीं है।

डेकोरेट किया गया है सामने की तरफ बहुत से लोग यहां पर खड़े--

यहां पर बहोत सारे घर बने हुए हैं।

घर बने हुए हैं और ये जो बिल्डिंग है पूरी ही वाइट कलर --

साइड में बहोत सी दूसरी दुकाने भी है और सामने की तरफ टायर रखें--

यहां पर बहुत सारे ब्लू कलर के बड़े सिलेंडर रखे हुए--

आसपास इसमें कुछ ब्लू कलर के दूसरे--

और इन सिलेंडर को यहां पर सेट करके लगाके अ--

पीछे की तरफ अलमारियां है अलमारियों में भी बहुत से बैग रखे हुए हैं छोटे बड़े और पूरा रूम है वो --

अंदर एक केबिन बना हुआ है जिसके बाहर काफी ज्यादा ब्लू वाइट कलर के पोस्टर लग--

यहां पर रेड कलर के बहुत से सिलेंडर रखे हुए हैं।

यहां पर एक बड़ा व्हाइट कलर का हॉल है।

अंदर की तरफ अलमारियां है जिसमें सामान रखा है और यह एक ग्रोसरी स्टोर है।